इस इमेज में हमें एक गेट दिखाई दे रहा है के गेट ब्लैक एंड वाइट कलर का है और उसके बाद जो हमें दीवाले ब्राउन कलर से पेट की गई है।

यहां पे बहुत सारे अलग-अलग कलर के फ्लॉवर लगे हुए है यह मोर बनी हुई है यहां पर दोनों साइड लेफ्ट एण्ड राइट साइड पीछे का पर्दा रेड कलर का है नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट बना हुआ है यहां एक चेयर लगी हुई है यहां पे बहुत सारे लाइटे लगी हुई है।

कुछ ग्रीन कलर की है कुछ पिंक कलर की है कुछ रेड एण्ड येलो कलर की है यहां पे बहुत सारा पानी दिख रहा है यहां पे थोड़ी दूर देखने पे कुछ जगह जो खाली पड़ी है जिसमें काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।

इस इमेज मे हमे एक साइकल दिखाई दे रही है साइकिल ग्राउंड के अंदर खड़ी है यहां पे थोड़ा सा कचरा भी पड़ा हुआ है।